एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ के पत्थर काले सफेद और लाल दिखाई दे रहे है नि --